यहाँ पर एक भवन दिखाई दे रहा है जोकि दो माले का है उस पे बोर्ड भी लगा हुआ है वह एक फ़ूड ट्रक का है नजर आ रहा है ऊपर के मालों पे शीशे की खिड़कियाँ दिखाई दे रही है।

तो उसके समीप बड़े-बड़े रेकर भी रखे हैं छोटा रेकर भी दिख रहा है जिसमें सामान भी रखा हुआ है।

पता नीचे दोनों व्यक्ति के मेज रखा हुआ है मेज में सामान भी रखा हुआ है सफ़ेद कलर का कपड़ा एक व्यक्ति हेलमेट पहना हुआ है दूसरे के व्यक्ति के हाथ में --

देख सकते है की सफेद रंग का भवन दिखाई दे रहा है जो की काफी ऊँचे माले का है ऊपर खुला आसमान नजर आ रहा है कुछ पेड़ दिखाई दे र --

यहाँ पर कई सारे चार्ट फर्श पे रखे हुए हैं इन चार्टो पर सुंदर-सुंदर चित्र बना रखे है जैसे की सामने हम देख सकते है चार्ट पे।

यहाँ हम देख सकते हैं की सामने एक स्टेज भवन सा सजा रखा है यह जो की काफी ऊँचा भवन दिखाई दे रहा है।

तथा उसके आगे नीचे कालीन बिछा रखी है अगल -बगल चेयर लगा रखी है चेयर पे कपड़ा लगा रखे है तथा जिन पे लोग बैठ भी रखे है बॉउंड्री भी दिखाई दे रही है।

यह है चर्च है चर्च के अंदर दीवार के पीछे देख सकते हैं क्रॉस का सिंबल दिख रहा है पेंट नजर आ रहा है स्पीच का मेज दिखाई दे रहा है जिसपे माले चढ़े हैं।